इस पत्थर में एक बहुत बड़ा छेद भी है।

इसके ऊपर बहुत सारे रंग बिरंगी बाइके भी लगी हुई है।

यह तस्वीर एक दुकान की है।

इस दुकान का रंग सफेद है।

सामने एक पीला और ब्लू रंग का बोर्ड भी है जिस पे लिखा हुआ है एस_आर_एम रामाप्यूरम इनफॉरमेशन सेंटर ।

यहां पे बहोत सारे पर्दे भी हैं।

ऊपर एक लाल और सफेद रंग का बोर्ड भी है।

यह तस्वीर एक कपड़े की दुकान की है।

यहां पर बहुत सारे ट्रक भी लगा हुआ है।

इस दीवार पे बहोत सारे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए है।

यहां सामने एक बड़ा सा मकान भी है।